और उसी के पास में हमें राइट साइड में एक दुकान दिख रही है जिसका शटर लगा हुआ है।

और रिक्शा के सामने एक रेड कलर का पिलर लगा हुआ है सामने कुर्सी लगी हुई है।